यहाँ पे एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पम्प की छत पे वाइट कलर पोता हुआ है। खम्भों पे वाइट कलर पोता हुआ है।

एक बैनर दिखाई दे रहा है। जिस पर डॉग की फोटोस बनी हुई है।

यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है जिसपे ब्लू पर्पल कलर पुता हुआ है। गेट दिख रहा है जिसपे ब्राउन कलर पोता हुआ है। तीन जेंट्स खड़े हैं। एक कार दिखाई दे रही है। एक बाइक दिखाई दे रही है।

कॉफ़ी का मग दिख रहा है। इसके अंदर कॉफ़ी भरी हुई है। कॉफ़ी का मग अंदर से सफ़ेद है बाहर से लाल है जिसपे सफ़ेद कलर से नेस कैफे लि--